लिखा हुआ है यहां पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं।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

यहां पे रंग बिरंगी चुनरी दिख रहे हैं देखने मे बहुत अच्छे लग रहे हैं।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

लिखा हुआ यहां पे --

मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है यहां पे।

यहां पे नीले नील रंग काफी है और यह काले काले रंग का भी है।

यहां पे आप देख सकते हैं। ये माला लगी हुए है यहां पे--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

यहां पे आप देख सकते है ये लाइट लाइट लगी हुई है। यहां पे--

और यहां पे देख सकते हो पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं सारे हैं।

यहां पे आप देख सकते हो ये आदमी औरत हैं।

और ये मत्ता की दो लग रही हैं और यहाँ पर ये --

और यहां पे पानी की कैम्पर भी रखा हुआ है और यहां पे ये आदमी बैठा हुआ है ये यह खाना ये खा रहा है।

दिख रहा है और यहां पर ये गेट है ये गेट लोहे का लगा हुआ है और यहां पे ये जो ऊपर की जाली है ये ब्लू कलर की दिख रही है।

यहां पे आप देख सकते हो ये आसमान है।

और यहां पे बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं और ये यहां पे पार्क दिख रहा है।